इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे: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
spellcheck वर्तनी की जाँच
autocorrectस्वसुधारयहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स 1004 और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं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
all find all पर click करें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
all replace all पर click करें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
यह हैं attributes format और no format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
चलिए इसे बंद करते हैं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
अंततः ok बटन पर क्लिक करें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
चलिए बदलावों को अन्डू करते हैं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
autocorrect विशेषता spellcheck का extension विस्तार है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
autocorrect dialog box खुलेगा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
अब पूरे text को चुनें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
options टैब पर click करें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
अब ok button पर click करें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
चलिए बदलावों को अन्डू करते हैं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
find and replace
spell check
autocorrect
व्यापक नियत कार्य